यहां आप देख रहे हैं एक औरत और एक आदमी खड़ा हुआ है।

और बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं कुछ बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं कुछ देख रहे हैं।

और चारों तरफ हरे भरे पेड़ उगे हुए हैं जो बहुत अच्छे हैं और हरियाली भी बहुत जादी है और हरे पड़े--

कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई है एक ऑल्टो है एक आई ट्वेंटी है जो व्हाइट कलर की है और एक स्कूटी भी खड़ी हुई है।

और यहां आप देख रहे हैं यहां पर आप बाहर--

पल्ली डाली हुई है और एक बाइक भी खड़ी हुई है और अंदर इन दुकानों में झंडे लेके गए हैं भारत के और बाहर गमले भी रखे हुए हैं जो रंग--

और यहां पर डिजाइनिंगदार बनाया हुआ गेट भी है जो बहोत अच्छा लग रहा है और अंदर जाओगे तो बहोत मजा आएगा।

और यहां छोटे बड़े पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं जो हरियाली देते--

यहां आप देख रहे हैं ये एक स्विमिंग पूल है जिसमें एक व्यक्ति तैर रहा है।

आप यहां देख रहे हैं एक बुक्स बहोत ही बड़ा जिसके तरफ दोनों तरफ ताला लगा हुआ है।

और यहां पर कुछ हरे भरे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

एक पेड़ पौधे भी रखे हुए हैं और यहां एक स्टुल भी रखा हुआ है जो बहुत--

और एक वाइट कलर की गाड़ी है और एक ब्लैक कलर की गाड़ी है जो बहुत अच्छी गा--

और यह एक गाड़ी एक्स_यू_वी पाँच सौ है जो बहुत अच्छी और बहुत ताकतवर गाड़ी है यह महिंद्रा व--

जहां पर आप देख रहे हैं बैंक ए_टी_एम है। जहां पर आप देख रहे हैं गुब्बारे लगे हुए हैं।

वाइट कलर के पर्दे से ढकी हुई है और यहां पर स्कूटी भी खड़ी हुई है और बाइक भी खड़ी हुई है जो बहुत अच्छी लग रही है और यह बहु--

यहां पर आप देख रहे हैं यह एक रोतक का मुझे लग रहा है बस स्टैंड है जहां पर एक बस भी खड़ी हुई है।

हरे भरे पेड़ पौधे भी खड़े हुए हैं ये पुराने जनम का किला लग रहा है जो बहोत अच्छा दिखाई दे रहा है काफी अच्छा नजारा--

यह आप देख रहे हैं एक सुबम डाबा है यहाँ पर डाबे पर आप बहुत सारी चीजें खा सक--